पांच लोग दिखाई दे रहे हैं सब शॉपिंग करने आए --

और माता जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पंडि जी यहां पर प्रसाद दे रहे हैं।

फोटो खींच रही है उस गर्ल ने वाइट कलर के शूज पेहेने हुए हैं।

इस इमेज में एक मॉल के अंदर की इमेज है और इसमें --